कोई ढोलक बजा रहा है तो कोई नारे बजा रहा है तो कोई गीत गा रहा है तो इसी के बीच में ये देखने अच्छा लग रहा --

यह मक्के की बाल है जो मक्के की पेड़ से तोड़ा गया है।

और इसे धरती पे मिट्टी पे रखकर खिचा गया है यह मक्के की बाल देखने में काफी अच्छा और खाने में स्वादिष्ट होता है।

इसमें आसमानी है उजला है जिंस है धोती है गमछा है सभी तरह के कपड़ा दिखाई दे रहे है।